यह एक बहुत बड़ा तालाब है यह तालाब में बहुत सारी मछलियाँ हैं।

यह सब बहुत सी फाइलें खाली हैं यह सब फाइल सब नई फाइल है।

यह एक पुस्तकालय है यह पुस्तकालय बंद पड़ी है।

यह एक मैदान है यह मैदान के बगल में बहुत सी घर बनी हुई हैं।

यह बस सब व्हाइट कलर की हैं और इन बसों का नाम पांडव बस है ।